इस तस्वीर में कई सारे लोग नजर आ रहे हैं।

ऊपर सारी लाइट्स जली हुई है।

यह तस्वीर में चार व्यक्ति दिख रहे हैं।

एक बाइक देखने को मिल रहा है।

ये तस्वीर एक मैदान का है।

पीछे लाल रंग का कपड़ा लटका हुआ दिख रहा है।

यह तस्वीर संग्रहालय का है।

इस तस्वीर में बच्चों के खेलने वाले स्लाइ दिख रहा है।

प्लेटफार्म पर बेंच बने हुए है।

इस तस्वीर में कुछ हिरन मैदान में नजर आ रहे हैं।

पीछे कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

टोकरी में कई सारे अंगूर दिख रहे हैं।

काले अंगूर के नीचे केले रखे हुए हैं।

कई सारी पेड़ और पौधे नजर आ रहे हैं।

गमले में पौधा लगा हुआ है।

कई सारे लोग दिख रहे हैं।